लोग बैठे हैं। इधर लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं।

काफी बड़ा --

शादी का फंशन होने वाला है ।

और यह सब फोटो बहुत ही सुंदर है।

काफी बड़ा और सुंदर है।

काफी ज्यादा सुंदर है। और ये मैदान के चारो पट्टी ओर नारियल के पेड़ लगे है। और ये नारियल के पेड़ बोहोत ही अच्छे है।